और अपना अपना प्रदर्शन दे रहें हैं ड्राइंग बना रहें हैं जहाँ टेब्लो पर एक कुछ फेविकोल रखा हुआ है कुछ कागज़ भी रखें हुए हैं बड़े-बड़े।